छत के ऊपर पीप ( वागेर भी है जिसमे कबर स्थान लग रहा है| गिटार लगी हुई हैं।

यह फोटो देख कर लग रहा है की कोई सरकारी दफ्तर है जिसमें टेबुल हैं कुछ फाइल है| उधर डस्टबिन और खुरसी हैं।

यह किसी पार्क का एरिया लग रहा है| पेले बारिस हुआ था जिसकी वजह से कीचड़ लगा हुआ है| चारों तरफ हरीयाली हैं।

यह फोटो देख कर ऐसा लग रहा है की कोई सरकारी द्र्क्टर है।